हमें यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है।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

हमें यहां पर एक शादी का दृश्य लग रहा है।

हमें यहां पर एक होटल दिखाई दे रही है।

एक आदमी का हाथ भी नजर आ रहा है।

हमें यहां पर एक मकान की छत का काम दिखाई दे रहा है।

जिसका बोर्ड नजर आ रहा है एक व्यक्ति दिख रहा --

सामने की तरफ एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

हमे यहां पर एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं।

पारक के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई नजर आ रही है।